ये एक बहुत बड़ा नदी है यहाँ दो नदी मे दो नाव तैर रहे है।

एक नाव पर बहुत सारा आदमी तेर रही है और एक नाव पर दो आदमी है बहुत बड़ा नदी है और हवा से भी --

और यहा खास-खास गेट उत बनाया हुआ है ग्रिल का लगा हुआ है और ऊपर से भी शीलब उलब का कप भी लगाया हुआ है।

ये एक मंदिर है यहा एक लोग पूजा कर रहे है।

दुर्गा जी ऊ-आई बाबा और भी मूर्ति यहां मिलता है।

ये एक पार्क है जिसमे झकाश गेट लगा हुआ है और अंदर मे जाने के बाद झकाश-झकाश फूल ऊल लगा हुआ है।